जिसमें कई प्रकार की दवाई और सब जेनरल समान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक हेलमेट दिखाई दे रहा है और एक मग भी दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है।

और यह एक सरकारी संस्थान दिखाई दे रहा है।

यहाँ की सफाई बहुत ही अच्छी है और इसका फर्श जो है वो ब्राउन हलके लाल कलर से --

टाइल्स लगा हुआ है और यहाँ पे दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

एक विशेष विशाल मैदान भी दिखाई दे रहा है।

पीछे कई माकन दिखाई दे रहें हैं पेड़-पौधे अनेक प्रकार के हैं।

और उधर हरे कलर का जड़ा भी लगा दिखाई दे रहा है पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग भी एंट्री गेट के माध्यम से अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।